और इसमें एक फोटो बोट --

और बहुत ही अच्छा लग रहा है घास भी छोटी-छोटी घास उगी हुई है।

सोना सोलर पेनल का खंभा लगा हुआ है।

यह जो फोटो आपको दिखाया गया उसमें किसी पहाड़ी पर मकान बना हुआ है इटो से मकान बना हुआ है।

बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है।

इस बिल्डिंग के सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है फोर व्हीलर टू व्हीलर खड़ी हुई है और कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

जिस कपड़ों को धोया नहीं जा सकता वॉशेबल नहीं होते हैं उनको ड्राई क्लीन किया जाता है।

यह जो फोटो आपको शो रहा है यह एक --

हॉस्पिटल का फोटो है जिसमें फीमेल जनरल वॉर्ड का फोटो है जिसमें बहुत सारे बेड लगे रहते हैं।

और लोड होकर यह समुद्र में।

इस फोटो में आपको बहुत से लोग चेयर्स पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो की स्कूल के कोई प्रोग्राम चल रहा है उस स्कूल में --

यह एक फोटो आपको रोड का फोटो दिख रहा है इस रोड के ऊपर ओवर ब्रिज भी गया हुआ है।

फूलों की दुकान दिख रही है इसमें बहुत सारी जयमाला फोटो किया जाता है जो कि भगवान जी को भी चढ़ाई जाती है।

इस फोटो में आपको किसी भगवान का जुलूस निकाला जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजाया गया है जुलूस की मुकुट को --

मोबाइल मिल रहे हैं जो कि ये बहुत ही अच्छा ब्रांड कहलाता है यह मेड इन इंडिया है ब्रांड --

अपने चेकअप करवाने के लिए आए हुए हैं हॉस्पिटल में।

थोड़ा अ इमोशनली लग रहा --

ये किसी शॉप बिल्डिंग दिख रही है ज्योकि येल्लो कलर से पेंट हुई है बिल्डिंग ।

और उसके सबसे ग्राउंड फ्लोर पे कोई शॉप बनी हुई है।

यह इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी किसी पत्थर की चट्टान पर ऊंचाई पर जाकर बैठा हुआ है।

जो कि आधा ही दिख रही है बिल्डिंग और सीढ़ियां बनी हुई है बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है।

बाउंड्री बनी हुई है जो कि ये बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है।

अच्छी दिख रही है वह बस स्टैंड पर खड़ी रहकर अपनी सवारी का इंतजार कर रही हैं।

और गार्डन बना हुआ है नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो में आपको ऑटो नजर आ रहा है ओवरब्रिज दिख रहा है।

ओवर ब्रिज के नीचे बहुत सी दुकान लगी हुई है कुछ लोग नजर आ रहे हैं गाडियां दिख रही है और एक रोड गई है।

क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग दिख रही है उसके बाजू से पेड़-पौधे लगे हुए हैं और कुछ लोग --

जैसा कि हम इस फोटो में दिख रहा है यह एक नदी दिख रही है नदी के ऊपर बादल दिख रहे हैं।